ये एक रेस्टोरेंट है जहाँ पर हमें खाने पीने की चीज मिलती हैं और यहाँ पर हम किसी भी प्रकार --

यह कोई गंगा है जहां पर हिन्दू लोग जाने के बाद अपने नहाते है और यहां पर अपने पा --

यह बहुत पुरानी जगह है यह जंगलों के बीच में है।